इस पुल पे बहुत सारे कपड़े टंगे हुए है और इस पुल को देख के मुझे --

और सभी लोगों को कुर्सियों पे बैठाया गया है सभी लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं और बहुत ही आनंद ले रहे --

आ और अंदर में बहुत सरे लोग बैठे हुए हैं जो अपना बाल कटवाएंगे।

तीन चार रिक्शा है और रोड है खाली सा और यहाँ पर --

ये रास्ता पूरा सुनसान है धूप है आदमी है और कुछ नहीं।